यह एक बहोत सुंदर सिक्स लैन है।

और एक महिला भी खड़ी हुई है।

यह एक बहुत सुन्दर टी_वी_एस मोटरसाइकिल की दुकान है।

यह एक बर्गर की दुकान है आउर इस दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा रखा है।

इस दुकान के बाहर बहुत से गुब्बारे लगे हुए हैं।

और छत में बहुत सी लाइटे लगी हुई है।

और इस कंपनी के बाहर एक लाल रंग की कार खड़ी हुई है।

जिसमें ऑटो मिल रही है।

और एक आदमी ने लाल कलर की टोपी पहन रखी है।